यहाँ बर्तनों की दुकान है यहाँ पर काफी सारे बर्तन रखे हुए हैं एक आदमी बर्तन बेच रहा है एक लड़ लेडीज़ बैठी हुई है ग्रीन कलर की साड़ी में एक लड़की --

ये बस स्टैंड दिख रहा है यहाँ पर लोग बाग कही जा रहे हैं एक अंकल के हाथ में अ गुलाबी कलर का थैला है और उनने बैग भी टांगा हुआ है अपनी पीठ पे और वो बस में चढ़ रहे है वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे है नीचे मिट्टी है।

ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पर लोंगा खेल रहें हैं क्रिकेट और लड़के खेल रहें हैं ज्यादातर बहुत बड़ा ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है थोड़ी-थोड़ी घास है मिट्टी है।

ये कोई ना अ मतलब घूमने की जगह है ये मतलब अ कोई फॉल वगैरा है।